यहाँ पर बहुत बड़ा आसमान दिखाई दे रहा है यहाँ से टावर दिखाई दे रही है यहाँ पर पाइप लाइन दिखाई दे रही है एक बहुत मोटी --

यहाँ पर बहुत सारे पेड़ पोधे लगे हुए है यहाँ पर नीला आसमान दिखाई दे रहा है यहाँ पर हरी भरी घास हो रही है।

इन कुर्सियों पर काला और पीला कवर चढ़ा हुआ है यहाँ पर कुछ लोग बैठे है।